पानी ये पानी मे फुब्बारे चल रहे है पीछे मेला लगा है झूले लगे है कुछ दो तीन बादल बादल है और--

पत्ती दिख रही है यहाँ हरी-हरी बादल है।

बहुर सारी गाड़ियां रखी है टूटी कार रखी है चक्के डले है जमीन पर ऊपर नेट लगी है सामने दीवाल है आजू बाजू खम्बे है गाड़ी खुली है।

ये एक दुकान है बहुत सारी टेबल रखी है टेबल पे टी_वी है बड़ी वाली टी_वी है पीछे दीवाल है लाइट जल री है।